जो हमारे बेगुसराय के बैंक कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिये जो हमारे बेगुसराय का बैंक बहुत अच्छा है। इतना अच्छा बैंक मैंने कभी नही देखा।

ये आप लोग देख सकते है जो हमारे बेगुसराय मे पेट्रोल पंप है। बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है। आपलोग भी देख सकते है ।